पेंट भी पड़े नजर आ रहे है कुछ देवताओं की तस्वीर भी दिखाई दे रही है इस फोटो में।

समुद्र पानी से भरा हुआ है।

पहाड़ों के ऊपर अच्छी हरियली छाई हुई है और यह पानी का भाव बहुत ही ज्यादा हैं।

और यह एक चौंके बीड़े हुए हैं और ये दोब लगी हैं बहुत ही अच्छी हरी भरी दोब है।

और यह ची तरह तरह की लाइटिंग लगी हुई है।

और उधर एक व्हाइट कलर का कुछ और भी पड़ा नजर आ रहा है और ये कुछ और लिखा गया है ये कोई व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है।

पोस्टर भी कुछ शब्दों में लिखा गया है और अंदर ये कुछ टेबल्स कुर्सियां और भी बड़ी नजर आ रही हैं।

बॉक्स में कुछ और भी नजर आ रहे हैं।

और साइड में कुछ और दिख रहे हैं।

इस फोटो में ये एक शॉप है इस शॉप में कोई एक बंदा खड़ा हैं।